मैनली यहां पर डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स को देखते हैं।

अभी आप जो पिक्चर देख रहे है ये गार्डन की पिक्चर है जहां पे ढेर सारी चेयर और स्टूल पड़ी है काफी सारे पेड़ है।

कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हैं काफी अच्छा और शांत वातावरण है और काफी अच्छा व्यू भी है।

कुछ लोग मोहर्रम अह के पास खड़े है और मोहर्रम काफी अच्छा और काफी ब्यूटीफुल है मोहर्रम के अंदर काफी सारे कलर्स पेंट किये गये है।

फिलहाल पेट्रोल पंप पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा लगता है रात का समय है इसीलिए पेट्रोल पंप पर कोई नहीं है।

होटल में काफी लाइटिंग हो रखी है काफी साफ सफाई है और काफी अच्छी और नीट एंड क्लीन होटल है ऐ_सी भी लग रखा है।

सामने दिखाई जा रही फोटो एक दुकान की फोटो है जहां दुकान के बाहर कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़े है जैसे की वाशिंग मशीन --

एक बेड की फोटो है जहां पर दो तकिए रखे हुए हैं दो चद्दर रखी हुई है बेड काफी नीट एंड क्लीन है।

सामने दिखाई जा रही फोटो एक धाम की फोटो एक है धाम के बाहर पानी का कुएं बना रखी है जहां पर गया और जानवर पानी पीते हैं।

और जो दुकान ज्वेलर्स की है उसका नाम शिव ज्वेलर्स है दुकान के बाहर काफी सजावट कर रखी है।

रेस्टोरेंट मैं काफी लाइटिंग हो रखी है ए_सी लगा हुआ है एक शख्स बैठकर अपनी पार्टी इंजॉय कर रहा है फैन लगा हुआ है।